यहाँ पर एक लड़का -लड़की बैठ के फोटो खींच रहे हैं बहुत बड़ा पहाड़ है बीच में लकड़ी है ।

और जमीन पर काफी बच्चे पढ़ रहे हैं किसी के हाथ में किताब है जमीन पर बिछा हुआ सामान है बहुत सारे बच्चे हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं ।

बहुत बड़ा बिल्डिंग है नीचे में बिल्डिंग के नीचे वाइट साईकल लगा हुआ है कुछ आदमी टहल रहे हैं